और साइड साइड में बहुत सारे मिट्टी से बने हुए घर छोटे छोटे दिख रहे हैं।

और एक घड़ी दिखाई दे रहा है दीवार के ऊपर लटकाए हुए।

इस पिक्चर में एक फैंसी रेस्ट्रो के अंदर दिख रहे हैं अंदर में काले रंग की चेयर और टेबल रखी गई है।

और यहां बहोत सारे पेड़ लोग भी हैं।

एक घर दिख रहा है डेकोरेट कर कर।

और बहोत सारे लाइट्स लगाए गए हैं एंट्रेंस पर।

किनार पे छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में एक रूम दिखाई दे रहा है।

और दीवार में फैन लटकता हुआ दिखाई दे रहा है।

और घर के बाहर मे छोटे छोटे से घास उगे हुऐ है।

पौधे लोग दिख रहे है।

इस पिक्चर में बड़ा बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

पोस्टर में जो लड़की के सकल को ब्लर किया गया हुआ है।

और उसके ऊपर में कपड़े पहनाए गए हैं।

शो के अंदर में बैठने के लिए बहुत सारी चेयर और टेबल रखी हुई है।

इस पिक्चर में दुकान के बाहर दिख रहे है।

घर के आसपास में छोटे छोटे घास लोग है।

और एक बड़ा सा पेर भी दिख रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है सफेद रंग बादल छाए हुए--

इस पिक्चर में एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है रेड कलर की।

पिक्चर के पीछे तरफ में बहुत --

घर के बाहर में दो सुमो गाड़ी खड़े हैं।

घर के पीछे में बहुत सारे पेड़ पौधे निकले हुए हैं।